यह झरना उप्पर की ओर से पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें बहुत सारे बड़े बड़े पत्थरे भी नजर आ रहे हैं।

ग्रॉसरी मे कुछ डब्बे भी दिखाई दे रहे हैं जिसका कलर ब्लू और पीला है।

जिसमें काफी सारे व्यक्ति खाना खाते हुए दिखाई दे रहे है यहां--

इस नदी में एक नांव भी दिखाई दे रहा है।

इसके बगल में एक ट्रेसफॉर्मा भी लगा हुआ है और एक बैनर है जिसमें रानी हॉस्पिटल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह सामने दो बॉडीगार्ड खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि त्रिशूल लिए हुए हैं।

यहां पे बहोत सारे बैनर्स भी लगे हुए हैं जिसमें एक ओप्पो जिओ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इन झंडा भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे एक फ्रिज रखी हुई--

इसके बगल में एक लंबी सी सड़क बनाई गई है।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

इस नदी में काफी गहरा पानी दिखाई दे रहा है।

यह एक नर्सरी का दृश्य ह--

फ्लावर्स बा काफी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं इस फ्लावर्स में काफी रंग बिरंगे भी हैं।

यहां पे एक लंबी सी सड़क भी दिखाई दे रही है और इस शोरूम के बाहर एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जो की वाइट कलर का शर्ट ब्लैक कलर का जींस पहना हुआ है।

और एक लंबी सी रैली भी है जो की ब्लैक कलर का है।

इसके ऊपर एक झाड़ू भी दिखाई दे रहा है।